यहा पे दो आदमी बैठे हुए है एक आदमी बैठा हुआ है लेके।

इस पे अलग अलग नम्बर्स चिपकाए दिए हुए है ए ईलेवन ए ट्वेल्व ए थर्टीन बी ट्वेल्व ।

दो तीन आदमी ईधर साइट मे आ रहे है और यहा पर पूरा तरफ झाड है झाड बिल्डिंग्स है ईधर पे सामने भी बहुत सारे लड़के--

इस पहाड़ मे भी बहुत सारे झाड लगे हुवे है ये प्रकृति देखिए कितनी ये है इसका नेचर प्रकृति के हिसाब से ये कितना हरे भरे है।

इस ये पेड और ये पहाड़ के बीचों बीच --